एक बहुत ही बड़ा ग्राउन्ड दिखाई दे रहा है ग्राउन्ड मे हमे बहुत सारे रनिंग ट्रैक बने हुवे नजर आ रहे है साथ ही साथ हमे यहा पर ग्राउन्ड मे बहुत सारी घास दिखाई दे रही है जोकि बहुत बहुत दूर-दूर तक फेली हुई नजर आ रही है साथ ही साथ हमे यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग का कलर हमे यहा पर कथा दिखाई दे रहा है।

और साथ ही साथ हमे यहाँ पर बहुत सारी लाइटें दिखाई दे रही है जो कि एक बहुत ही बड़े खंभे पे लगी हुई नजर आ रही है और हमे यहाँ पर एक आदमी दिखाई दे रहा है जो कि दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा और वो अ काले कलर की कपड़े पहने हुए नजर आ रहा है।

बहोत बड़ी रेक दिखाई दे रही है। रेक में हमे कथई कलर भी नजर आ रही है। उसके ऊपर हमें बहोत सारे अगरबत्ती के डब्बे रखे हुए नजर आ रहें हैं। कुछ अगरबत्ती के डब्बों का कलर हमें यहाँ पर सफेद दिखाई दे रहा है।

पानी के अन्दर हमें बहोत सारी घांस उगी हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ उसके आजू बाजू हमें बहोत सारी घांस दिखाई दे रही है और हमे यहाँ पर बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं जोकि बहोत दूर दूर तक फैले हुए नजर आ रहे हैं और हमे यहाँ पर बहोत सारे खम्बे दिखाई दे रहे हैं। खम्भे के ऊपर से बहोत सारी वायर्स जाती हुई नजर आ रही हैं।

खेत मे हमे बहोत सारे झाड़ लगे हुए दिखाई दे रहै है और हमे यहाँ पर बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहै है जोकि बहुत दूर दूर तक फैले हुए दिखाई दे रहै है और हमे यहाँ पर एक बहुत सारी घास दिखाई दे रही है और हमे वहाँ पर क कच्चा रस्ता दिखाई दे रहा है जोकि बहुत दूर दूर तक जाता हुआ नजर आ रहा है।

इन्होंने बहुत सारा समान रखा हुवा दिखाई दे रहा है जोकि बहुत सारी बोटले नजर आ रही है बहुत सारे समान रखा हुवा दिखाई दे रहा है बहुत सारे डब्बे रखे हुए नजर आ रहे है जोकि देखने मे बहुत ही अच्छा लग रहे है।

यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी दुकान दिखाई दे रही है दुकान के बाजु मैं हमे एक लैपटॉप रखा है कम्पुटर रखा हुआ नज़र आ रहा है जिसका मोनिटर दिखाई दे रहा है और उसका टेबल रखा हुआ नज़र आ रहा है और नीचे हमें उसका सी.पी.यु. दिखाई दे रहा है।